है ना उषा कम्पनी का ये प्रचार कर रहे हैं एक सफेद लाइट भी जली हुई दिख रही है मुझे।